और जो सब्जी ले रहा है और एक बेच रहा है यहां पे एक--

यहां पे ये एक बैनर लगा हुआ है पेप्सी के नाम से।

शॉप दिखाई दे रही थी ये जहां पे बहुत सारे हरे हरे रंग के अह प्लांट लगे हुए हैं जिसके यहां पे प्लांट एंड पोर्ट की स्टार्टिंग रेट --

यहां पे ये एक मोती डूंगरी रोड पर है जयपुर में--

लोगों भगवान जी के आ करके हमने बहोत सारी मन्नतें मांगते हैं मंदिर का नजारा बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

ये एक सब्जी मार्केट है यहां पे बहोत सब्जी बहोत सारी सब्जियां दिखाई दे रही है यहां पे आलू बैंगन लौकी --

ये एक बहोत अच्छी सी कार दिखाई दे रही है जिसका नंबर डब्लू --

डबल जीरो थ्री टू है ये कार में बहुत अच्छे से डेकोरेट करी हुई है बहोत अच्छे से इनमें फूल लगा रखे हैं और इसकी इनकी --

के नाम से एक स्टेशनरी दिखाई दे रही है। यहां पे लोग दूर दूर से आते हैं।

विक्स वगैरा वो सब यहां मिलती हैं यहां पे ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है और लोग यहां पे आते है और सामान लेकर के जाते हैं।

ये एक लायब्रेरी नजर आ रही है यहाँ पे बहोत सारी बुक्स रखी हुई है बुक्स का बाहोंत हि अच्छा नजारा है यहाँ पे लोग आते हैं।

यह एक बुक की दुकान है जहां पे यहां पे कंपटीशन की बुक भी खरीदी जाती है और यहां पे लोग आते हैं दूर दूर से।

ये एक बहोत ही अच्छा हरिद्वार जैसा नजारा नजर आ रहा है यहां पे बहोत सारी औरतें यहां अ स्नान कर रही है पानी में और बहोत सारे लोग वहां --

ये किले को देखने आते हैं यहां का नजारा बहुत अच्छा यहां पे एक बोर्ड और बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है।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

बैटरी रिक्शा लेने आए हुए हैं एक आदमी ने आसमानी कलर की शर्ट और पैंट पहन रखी है और एक ने गुलाबी कलर की शर्ट पहन रखी है और यह रिक्शा हरे और --

ये एक हेवन ऑफ आइस क्रीम के नाम से एक पार्लर खुला हुआ है यहां पे लोग यहां पे बहुत सारी चेयर रखी हुई है और --

यह आइसक्रीमें मिलती हैं तरह तरह की वैरायटीयां मिलती है यहां पे इमेज भी रखी हुई है।

ये एक बहोत बड़ी जगह दिखाई दे रखी है यहां पे एक कार खड़ी हुई है इडियो के नाम से और ये कार बहोत बड़े है।

ये एक लड़का खड़ा हुआ है लड़का एक बगीचे में खड़ा हुआ है बगीचे के बाग में पेड़ है पेड़ के ऊपर पेड़ के ऊपर ये लड़का खड़ा हुआ है उसने --

ये बैलून भी बहोत अच्छे लग रहे हैं और यह कैफे है।

एक अ एक हॉल दिखाई दे रहा है यहां पे शोरूम दिखाई दे रही है यहां पे बहुत सारी किराने की प्रोविजनल स्टोर यहां पे घी चाय पत्ती चीनी --